और यह सामने एक अलमारी है और--

इधर बल्लेबाजी करने के लिए लोग खड़े होते हैं और गेंदबाजी करने के लिए खड़े होते हैं।

जिसके सामने एक टेबल लगा है और वह बैठकर--

बोर्ड में रेलवे ने अपने बारे में लिखा है और नीचे जीएसटी अभिषेक सिंह करके लिखा है।

और उसके बगल में एक व्यक्ति गले में ढोलक बांधे हुए बजाता हुआ नजर आ रहा है।

और मंच पर कुछ व्यक्ति खड़े हैं और बहोत ही अच्छा नजारा लग रहा है।

टेबल पर कुछ क्लीनिक का सामान रखा है जैसे वेब केस इंजेक्शन और कुछ दवाइयां भी रखी--

यहां पर कुछ लोग अपना अह सामान खरीद रहे हैं और एक दो लोग सामने खड़े हैं।

लेडीज सामान भी मिलता है श्रृंगार का और कुछ लेडिस भी सामान खरीद रही हैं।

और थोड़ा पीछे आएंगे तो हरा बैकग्राउंड दिख रहा है और थोड़ा पीछे आएंगे तो बहोत दो बड़े बड़े पत्थर--

और बहोत ही अच्छा नजारा दिख रहा है।

कुछ लोग अपना काम कर रहें हैं।

और एक व्यक्ति ने अपने हाथ में कॉफी ले रखी है।

आसमान बहोत ही साफ और सुथरा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक पवित्र नदी दिखाई दे रही हैं और--

पीछे की दीवाल व्हाईट है और कुछ लोग कपड़ा खरीदने आए है।

और एक रोड दिखाई दे रहा हैं रोड बहोत ही साफ सुथरा नजर आ रहा है और कुछ लोग--